यहाँ पे लेडीज जेन्ट्स सभी के कपड़े मिलते हैं इसे कारण मॉल में बहुत भीड़ होती है मॉल के कपड़े काफी अच्छे क़्वालिटी के होते हैं और काफी सस्ते होते हैं।

और यहाँ पे लोग जाते हैं बहुत सारी बिमारियों के लिए दवाई खरीदने और यहाँ पे एक डॉक्टर भी होते हैं जो कि दवाइयाँ देते हैं ।

और डैम को पानी को इक्कट्ठा करने के लिए बनाया जाता है जिससे कि लोग पानी से बिजली उत्पादन करते हैं और भी बहुत प्रकार के कार्य करते हैं।